यहां गुफा है और इसके उसके पास जाकर एक आदमी जो गया है --

ये क्या यहां तो नृत्य की सारी सभी सभी चीजे है यहां उपलब्ध।

ये चार और मां सरस्वती की वीणा जैसी मछलियां डमरू सब कुछ बजाने वाला है।

वाउ यहां चार-पाँच लेबर है यहाँ एक --

ये लग रहा है गुजराती या फिर पंजाबी भी हो सकता है बहुत ही सुंदर स्त्रियां सब नृत्य कर रही है।

यहाँ मस्जिद भी बगल मे है कितना सुनहेरा नज़ारा हैं यहाँ रोड का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है।

देखिये यहाँ पे बन रहा है एक घर बन रहा है उसके बगल में एक बिल्डिंग है जो ये घर बन रहा है जो उसमे लेबर काम कर रहे है।

क्या क्या कर रहे है घर बनाने मे क्या क्या लगता है देख सकते है।

दवाइयाँ लेने कुछ इनके घर मे प्रॉब्लम्स हुई होगी बहुत ही अच्छी-अच्छी।

बहुत ही तरह-तरह के कपड़े निकाले हुए हैं कलर - कलर के कितना क्यूट सा कपड़ा है ।

और मुझे भी पहनने का दिल चला गया बहोत ही गजब सब कपड़ा है वाओ ये कपड़ा का तो में बहोत ही चॉइस करती हूँ।

हाय गाइस देखिए यहाँ पे कितना नजा कितना गजब का नजारा है यहाँ पे ।

यहाँ बहुत सारे आदमी सुतल बा।

हाय गाइस देखिए यहां पे कुछ छोटे-छोटे बच्चेस हैं बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहां पे ट्रीज --

एगो येलो कलर का टी-शर्ट पहनकर एक अंकल किसी से बात कर रहे हैं और उन्होंने येलो कलर का टी-शर्ट पहना है ये देखने में बहुत सुंदर बहुत अच्छे लग रहे और आदमी पानी भी बहुत दूर-दूर से बहुत लग रहा और आसमान भी नीला नीला देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर --